यहाँ पे दुर - दुर तक खेत की तरह दिखाई दे रहा है जिसके अंदर कुछ लगा हुआ है हरा - हरा पीछे मकान की तरह देखाई दे रहा है।

काफी सारे लोग जा रहे हैं यहाँ पे बहोत बड़ी - बड़ी बिल्डिंग बनी हुई हैं सामने लाइट के काफी सारे खंबे दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे बहोत लाइटें --

वहां पे एक जना खड़ा है। पीछे चारो ओर रेलिंग दिखाई दे रही। चारो ओर काफी सारे बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे। लाइट वाले तार जैसे दिखाई दे रहे रेलिंग के इधर --

नीचे इधर कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं अंदर कार खड़ी हुई है उधर मोटरसाईकिल भी खड़ी हुई है नीचे पक्का फर्श दिखाई दे रहा है।

और सामने काफी सारे पेड़ ही पेड़ लगे हैं जो काफी बड़े-बड़े दिखाई दे रहे है। वहां पे कुछ छोटे-छोटे पेड़ भी लगे --

रेलिंग बनी हुई है। जाली लगी हुई है। पीछे एक बहोत बड़ा कुछ बना हुआ है। इधर से समझ नहीं आ रहा। वहां पे बहोत सारे बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं।